यहाँ पे व्यक्ति के हाथ दिखाई दे रहे है जो मिर्ची रखे हुए है मिर्ची रखी हुई है जो दिखाई दे रही है एक--

और दाल रखी हुई है सब्जी रखी हुई है चटनी रखी हुई है ककरी रखी हुई है मिर्ची दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है विष्णु भगवान की और राधा रानी की यहाँ पर कुछ फूल चढ़े हुए है जो दिखाई दे रहे है मंदिर में कुछ झालर बनी हुई है फूल की जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रही हैं जो कि एक थाल में रखी हुई है एक क्रेट दिखाई दे रही हैं जिसके ऊपर थाल रखी हुई है यहाँ पर एक न्यूज पेपर दिखाई दे रहा हैं जो नीचे पड़ा हुआ हैं।

यहाँ पर एक कुआँ दिखाई दे रहा है जिसमे पानी भरा हुआ है।

यहाँ पर एक बैठने के लिए कुर्सी दिखाई दे रही हैं एक सोफा बेड दिखाई दे रहा है एक ग्राउंड दिख रहा है जिसमे हरियाली लगी हुई हैं पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रही हैं।

पहाड़ दिखाई दे रहा है कुछ पत्थर डले हुए हैं जो दिख रहे हैं।

यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए है गोल आकार बना के जो दिखाई दे रहे कुछ फटिया बिछी हुई है जो दिख रही हैं।